जहां पर बीचो-बीच एक कुआ है और आस-पास घर बनाने की सामग्री।

और सामने एक की मशीन भी रखी हुई है।

यह किसी रास्ते कि तस्वीरे जैसे एक साइड मे बच्चो भीड़ दिखाई दे रही हैं और दूसरे साइड मे दो बच्चे बैठ कर फोन देख रहे हैं। --